जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यहां एक व्यक्ति और एक बच्चा भी है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ कि इस मंदिर में लाइटें भी लगी हुई हैं जो व्हाइट कलर की हैं जैसे की मैं--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यहां एक बहुत बड़ी पेड़ भी है।

इसमें से एक कार ब्लैक कलर की है।

जिसमें बहुत सारे सामाने रखे हुई हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस शॉप में पंखा लगा हुआ है जो व्हाइट कलर का है दो--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यह साॅफ काफी क्लीन है जैसा कि मैं समझ पा रही हूं कि यहां एक भी व्यक्ति नहीं है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर तीन बालून लगे हुए हैं जिसमें से दो बैलून व्हाइट नहीं और एक पिंक कलर की है ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां एक आदमी खड़ा है जैसे आसमानी कलर का कमीज और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है जैसे कि मैं--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस आदमी के हाथ में एक बॉटल भी है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि इस आदमी ने एक घड़ी भी पहनी हुई है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ तीन व्यक्ति हैं जिसमे से एक व्यक्ति बैठा हुआ हैं।

जैसे की मैं देख पा रही हुं यहाँ एक व्यक्ति है जो कि‍न्डल जला रहा है जिसने ब्लैक कलर का कोर्ट पहना हुआ है।

लड़की का पुतला भी है जैसे की मैं देख पा रही हूं इस दुकान में कुर्ती भी है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यह एक बहुत बड़ा फील्ड है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां कुछ लोग है जो क्रिकेट खेल रे हें।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस बाउंड्री के सामने कुछ घास भी है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस कॉलेज के बाहर कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यह एक नदी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस नदी का पानी काफी क्लीन है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ की सड़क के किनारे काफी सारे बिल्डिंग्स भी हैं जैसे की --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे गमले में बहुत सारे पौधे रख्त लगे हुए हैं जैसे की --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यह एक मंदिर है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस मंदिर का कलर ब्राउन और येलो है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस मंदिर में एक मूर्ति भी है जैसे कि मैं देख--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यह एक रूम है जो काफी क्लीन है जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस रूम में लाइट लगी है जैसा कि मैं देख पा रही हूं इस रूम में एक टेबल है जो व्हाइट और ब्लैक कलर का है जै--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक सड़क है जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि सड़क के किनारे एक कुत्ता बैठा हुआ है जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि सड़क के किनारे एक स्कूटी खड़ी है जो नीले कलर की है जैसे कि--

यहां दो बाइक भी खड़ी है जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यहां दो स्कूटी भी खड़ी है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि यहां एक हाथी का ग्रीन कलर का स्टैचू --